यह स्टेशन से दो किलो मीटर दूरी पर है यह बहुत बड़ा --

यह गुफा बहुत बड़ा है | यह भागलपुर मै है |

साफ़ किया जाता है और ठीक भी किया जाता है | यहाँ पर सारे गाड़ियाँ को ठीक किया जाता है |

यहाँ पर हर गाड़ी को ठीक किया जाता है और उस गाड़ी की धुलाई भी |

की जाती है यह भागलपुर में है स्टेशन से आधा किलो मीटर दूरी पर है।